अंदर जहां पर बहुत सारे लोग जा रहे है और यहां पर अस --

इस पिक को देखकर पता चल रहा है की यह आस्था बैंक ए.टी.एम की पिक --

चार उम जेंट्स है जो खड़े हुए हैं तथा इसमें बोहोत सारे गमले रखे हुए हैं। उनोमे पेड़-पौधे लगे हुए है।

हेल्लो एवरीवन जैसे की इस पिक को देख कर पता चल रहा है यह हनुमान --